setting up the gimp पर meet the gimp tutorial में आपका स्वागत है
आज मैं आपको दिखाना चाहती how कि gimp को कैसे set अप करते हैं जब आप इसे पहली बार प्रयोग कर रहे हों
gimp में सभी अन्य windows एवं macintosh programs की तरह एक बड़ी windows के बजाय छोटी windows का प्रयोग किया जाता है
यह unix world का इतिहास है और unix का प्रयोग करने वाले love पूरी screen पर फैली हुई windows और एक ही समय पर बहुत से programs चलाना पसंद करते हैं
यदि आप इन विभिन्न windows के साथ कार्य करने में सक्षम नहीं हैं तो आपको gimpshop पर देखना चाहिए
यह एक program है जिसमें gimp का प्रयोग किया जाता है और इसे photoshop जैसा बनाने के लिए इस पर एक नया यूजर interface बनाता है
मैं gimp का प्रयोग करना चाहूँगी क्योंकि gimp में बिलकुल नये एवं बेहतर tools हैं
यह आज के लिए tip है जो आपको उपयोगी जानकारी एवं tips प्रदान करेगी
अभी यहाँ undo विकल्प के बारे में एक tip है जिसके द्वारा आप कुछ चरण पूरे कर सकते हैं और फिर आप undo का प्रयोग करके उन्हें वापस बदल सकते हैं
यह अधिकांश बार कार्य करता है
कुछ भी बहुत अलग करने से पहले अपने कार्य को सेव करना बेहतर है
अब अन्य tools पर एक नजर डालते हैं
यहाँ gimp की मुख्य window the command central है
और यहाँ शीर्ष पर toolbox है
फिर हमें toolbox से हमारे tools के विभिन्न विकल्पों के अंतर्गत रंग चुनने के लिए रंग box प्राप्त होता है
इसे थोड़ा और विस्तृत करते हैं
यहाँ हमारे पास layers channels color channels path and undo history के लिए dialog boxes हैं
इसके नीचे रंग चयन dialog है जहाँ से आप विभिन्न रंग चुन सकते हैं
यहाँ brushes patterns gradient एवं इस प्रकार के अन्य dialogs हैं
मैं इनमें से कुछ dialogs को toolbox में शामिल करना चाहती हूँ ऐसा करना बहुत आसान है
dialog के शीर्षक में शब्द layers पर click करें और इसे toolbox के नीचे यहाँ शब्द color picker तक खींचें
और मुझे यहाँ इस प्रकार एक tabbed dialog प्राप्त होता है
मैं इसे channels के साथ भी करुँगी
मैं paths के साथ यह करुँगी
और मैं undo history के साथ यह करुँगी
मुझे नहीं लगता कि मुझे brushes tool की आवश्यकता है क्योंकि यदि किसी tool में brush होती है तो यह यहाँ प्रकट होता है और मैं इसका चयन कर सकती हूँ
किन्तु मैं वे रंग रखना चाहती हूँ अतः मैं इस पर click करती हूँ और इसे undo history के आगे drag करती हूँ
और यहाँ इस window को and किया जा सकता है
मैं file>> dialogs से सभी dialog boxes को access कर सकती हूँ
आप यहाँ कुछ dialogs देख सकते हैं जो हमारे toolbox में नहीं हैं और हमें उनमें से एक यानी tools की आवश्यकता है
my tool box में कुछ ऐसे tools शामिल हैं जिन्हें मैंने कभी प्रयोग नहीं किया है और my उन्हें उन tools से बदलना चाहती हूँ जिन्हें my प्रयोग करना चाहती हूँ
उन tools के साथ शुरू करते हैं जिन्हें मैं रखना चाहती हूँ
मैं curves levels threshold रखना चाहती हूँ brightness एवं contrast – मैं इनका चयन नहीं करना चाहती हूँ
मुझे perspective clone की आवश्यकता नहीं है और न ही मुझे ink या airbrush की आवश्यकता है
और मुझे सभी शेष tools की आवश्यकता है
मैं इस पर बाद में अध्ययन करुँगी उसके बाद मैं देखती how कि कितना स्थान शेष बचता है
अब मैं file एवं preferences पर जाती हूँ
मैं environment एवं interface को भी वैसा ही छोड़ देती हूँ
theme में मैं small का चयन करती हूँ
और जब मैं इस window को एक तरफ खींचती हूँ तो आप देखते हैं कि सभी आइकॉन सिकुड़ गए हैं और वहां tools के बारे में जानकारी के लिए अधिक स्थान मौजूद है
tool options पर जाएँ और default interpolation को बदलकर sinc करें यह रिसाइज करते समय या घुमाते समय pixels की गणना करने के लिए सर्वोत्तम interpolation है
अन्य सभी विकल्पों को वैसा ही छोड़ दें
toolbox पर वापस जाएँ और यदि आप इन विकल्पों को रखना चाहते हैं तो इन्हें select करें अन्यथा deselect करें
आपके पास रंग हो सकते हैं जो foreground एवं background रंगों को बदलने का एक सरल तरीका है
आप brush एवं gradient tools प्राप्त कर सकते हैं यहाँ आपके पास एक छोटी image या सक्रिय image का थंबनेल प्राप्त होता है
मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है इसलिए मैं इसे deselect करती हूँ यह आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि आप इसे रखना चाहते हैं या नहीं
आप default image default grid एवं default image window को वैसा ही छोड़ सकते हैं
मैं सभी preferences पूरे कर चुकी हूँ
और
मैंने path को परिवर्तित नहीं किया है अतः मैं यहाँ इसका प्रयोग नहीं कर सकती हूँ
अब मुझे कुछ अधिक स्थान पाने के लिए यहाँ केवल एक tool को हटाना होता है किन्तु सर्वप्रथम मै इसे कुछ चौड़ा करुँगी
आप देख सकते हैं कि toolbox dialog काफी तंग हो गया है
बस इसे यहाँ खींचें
मुझे लगता है कि मैं यहाँ बिना एक नई पंक्ति बनाये 3 और tools डाल सकती row
अतः मैं brightness huesaturation एवं color balance को शामिल करुँगी
उन सभी tools पर जो यहाँ नहीं दिखाए all हैं file एवं dialogs पर क्लिक करके पहुंचा जा सकता है
और अब हमने अपना कार्य करने के लिए set कर लिया है
जब आप gimp को बंद करते हैं सभी विकल्प स्वतः ही सेव हो जाते हैं और ये वैसे ही शुरू होंगे जैसे आपने बंद किये हैं
और बहरहाल मैं development version का प्रयोग कर रही हूँ जो कि gimp 2318 का unstable version है
मैंने अभी देखा कि आज 2319 वर्जन जारी किया गया
इसे unstable कहा जाता है किन्तु gimp एक ऐसे बिंदु पर पहुँच रहा है जहाँ 24 horizon में अगला stable version होगा और इस version यह market में किसी any सॉफ्टवेयर की तरह ही stable होगा
यह gimp को सेट करने के बारे में था
यह स्क्रिप्ट प्रभाकर द्वारा अनुवादित है मैं श्रुति आर्य आपसे विदा लेती हूँ धन्यवाद